चित्र में हम देख सकते है कि--

जो कि बहुत बड़ा है उसमें एक--

जो कि बोहोत बड़ा है उसमें सुंदर सुन्दर दरवाजे लगे हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा सा भगवान जी का मूर्ति है जिसको--

साइड से जाते हुए दिख रहे--

यहां पर एक बहोत बड़ा तालाब बना है।